बहुत सारी बाइके दिखाई दे रही है जो ब्लैक कलर की हैं और रेड कलर की है।

और कुछ टोकरियां रखी हुई दिखाई दे रही है जो येलो कलर की है और मिट्टी कलर की है।

और एक फैन दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है उसमें बोहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है और बहुत सारी कुर्सियाँई दिखाई दे रही है जो ब्लैक कलर की हैं।

और चार टोटो दिखाई दे रहै हैं जो नए है जो ब्व्लैक कलर के हैं रेड कलर के है और ब्लू कलर के है।

इस इमेज में मुझे एक छज्जा दिखाई दे रहा है जो क्रिम कलर का है और ब्लैक कलर का हैं।

इस इमेज में मुझे एक गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमे छोटे-छोटे घांस दिखाई दे रहे है जो ग्रीन कलर है।

इस इमेज में मुझे एक ऑफिस दिखाई दे रह है जो लैक एंड वाइट कलर का है।

और कुछ घरें दिखाई दे रही है जो वाइट कलर की है ब्लू कलर की है और कुछ घड़ी वाला घर दिखाई दे रहा है।

इस इमेज मे मुझे गाड़ी का शो रूम दिखाई दे रहा हैं जो ब्लैक एण्ड व्हाइट कलर का हैं और यलो कलर का हैं।

इस इमेज में एक दुकान दिखाई दे रहा है जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का है एक लाइट दिखाई दे रहा है और बहुत सारे कपड़े दिखाई दे रहै है जो ग्रीन कलर के है येलो कलर के है ब्लैक --

और कुछ इटे के घर दिखाई दे रहै है जो रेड कलर के है।

और कुछ कटोरियाँ दिखाई दे रही है जिसमें रंग रखे हुए हैं।

और घरें दिखाई दे रही है जो वाइट कलर की है और क्रीम कलर की है जिसमे छोटी-छोटी खड़कियाए दिखाई दे रही है और एक दिवार दिखाई दे रहा है जो रेड कलर का है।

इस इमेज में मुझे एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जो ब्लैक एंड वाइट कलर का है और वाइट कलर का है और ब्लू कलर का है और येलो कलर का हैं।

और कुछ लोग दिखाई दे रहे है जो यहाँ पर बैठे हुए है और कुछ डब्बे दिखाई दे रहे है जो मिट्टी कलर के है जो ब्लू कलर के है।